यहीं बच्चा ठहरा हुआ पूरे तिरंगा के लगे हुए है यहां पर और--

यहां घर की छत बन रही ये घर का काम चल रहा है यहां पर।

ये देखो एक बड़ी सी सड़क है पीछे पूरे झाड़ा हैं और ये एक मंदिर दिख रहा ये--

और यहां पे दो लोग खड़े हुए है सामने कुलर है।

और कुछ लोगा खड़े हुए हैं व पूरे लाइट्स लगे हुए है स्टेडियम में--

और यहां पे पहाड़ है बहुत सारे और यहां नीचे रास्ता भी है जाने के लिए।

ये देखिए यहाँ पे झाड़ा है यहाँ पे जंगल के जैसा दिख रहा है पूरा ये और नीचे पूरी घास-घास है और ये झाड़ा है पूरे यहाँ पर।